यहाँ पे देख सकते है पत्ती दिख रही है जोकि सफेद कलर की है उस पे हरी - हरी - सी धब्बा भी दिख रहे है और पानी भी तरी पूल के तरी उवाड़ा है यहाँ पे पूल बना हुआ है जोकि सफेद कलर से पुता हुआ हैं।